कोई मार्केट है इसमे बाइक बहुत सारी है और --

और कोचिंग पढ़ने आए हैं और एक गुरु जी एक मैडम जी पढ़ा रही हैं।